यहाँ पर आठ कर्वे रखे हुए है।

यहाँ दूकान है इस दूकान में तीन काँच लगे हुए हैं पास में अलमारी है उस अलमारी में --

यहाँ विद्यालय की कक्षा का है यहाँ पर कुछ विद्यार्थी कुछ बना रहे हैं।